यहाँ पे गरीब घराने के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे सरकार द्वारा बच्चो को पढ़ाया जाता है और यहाँ पे दोहपर में भोजन भी दिया जाता है।

यह एक ऑटो स्टैंड है और यहाँ पे बहुत सारी रिक्शे खड़े होते हैं और --

और यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के पेट्रोल डीज़ल दिए जाते हैं यहाँ पे दूर-दूर से आते हैं गाडियाँ।

और यहाँ पे भोजन बहुत अच्छा काराया जाता हे | यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं दूर का दोपहर का भोजन करने शाम का नास्ता करने ।

इस स्कूल में बहुत दूर-दूर से स्टूडेंट आते हैं पढ़ाई करने और यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है।